आप जैसे की भोले बाबा का नाग का बनाया हुआ है।

अंदर से एक व्यक्ति आ रहे हैं।

एयर और बेड लगा हुआ है।

बहोत सारे व्हाइट कलर का चेयर लगाया गया है।

अच्छा बनाया गया है जो की बहुत सारे फूल और बहुत सारे लाइट लगाया गया है।

जोकि एक नाव यहां पे है।

ये एक दुकान है जहां पे केक वगैरा सब मिलता है।

और प्लेट रखा हुआ है चम्मच रखा हुआ है।

सब टेबल पर और छत के ऊपर मे बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइटें लगा हुआ है।

और इसके हाथ में एक बोसंली लगाया हुआ है।

बगल में भी बहुत सारे समान रखा हुआ है।

और काफी लंबे चौड़े बनाए हुए हैं।

यहां पे घर बनाने का काम कर रहा है।

और बहुत सारे ईंटें गड्ढे में डाले हुए हैं।

और एक कैमरा भी लगा हुआ है ।

वहां पे एक बैनर लगा हुआ है।

ये एक पहाड़ का सीन है जोकि पहाड़ से पानी गिर रहा है।

और हर एक टेबल पर एक फूल रखा हुआ है।

रेड कलर का कंबल रखा हुआ है एक बैग रखा हुआ है।

यहां पर स्कूल के बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति है जो कि कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं और कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।